कुछ बड़े-बड़े मछली है कुछ छोटे-छोटे --

में साइकिलों में समान है।

और भी बोहोत सारे घर है।

यहाँ पर छत की ढालाई हो रही है यहाँ बहुत सारे आद --

मी हैं सब आदमी काम कर रहे हैं कुछ आदमी के --

बहोत सुंदर-सुंदर घासे भी है बहो --

बड़ा है यहां एक मस्जिद भी है यहाँ कुछ --

बहोत ही हरी-भरी घांसे हैं बहोत ही सुंदर लग रही है।

यहाँ कुछ लाइटे भी लगाई गई हैं बहुत सा --

हैं यहाँ कुछ बेंचें भी हैं।

सारे पेड़ हैं बहुत ही हरे-भरे हैं यहाँ से ब --

भी है बहोत सारे टेबल से सा --

यह आदमी हैं बहुत सारे बच्चे हैं कुछ आदमी के --

रो ओर से घेराने लगे गए है।

यहां है बहुत सारे मछलियां है।

ये एक पंखा भी लगा हुआ है।

और के पौधे भी है यहाँ बहुत छोटे-छोटे पौधे ल --

इ बहुत ही बड़ा है।